ठंडा ठंडा पानी यहां पे बहोत सारे झूले लगे हुए है यहां पे बहोत सारे बच्चे झूला झूल रहे है।

यहां पे बहुत सारे कट्टे रखे हुए हैं।

यहां पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं।

सामने एक पेड़ उग रहा है यहां पे खंबा लगा हुआ यहां पे बहुत सारे घर बने हुए हैं।

इन्होंने टिक्की बनाई यहाँ पे प्याज कटी हुई रखी हुई है यहाँ पे बहोत सारी चीजें रखी हुई यहाँ पे धनिया भी रखा हुआ हैं।

यह एक फैक्ट की तस्वीर है यहां पे बहोत सारी मशीनें रखी हुई हैं ऊपर पंख लगे हुए हैं।

यहां पे प्रार्थना चल रही यहां पे बहोत सारे बच्चे हाथ जोड़ के खड़े हुए हैं।

सामने बहोत सारी बिल्डिंगे बनी हुई है। यहा पे टेन लगाई हुई है।

और यहाँ पे लाइटें भी लगी हुई है और पंखे भी लगे हुए है।

ये एक ऑफिस की तस्वीर है यहां पे मेज और कुर्सी रखी हुई हैं यहां पे लाइटें लगी हुई हैं।

यहां पे दीवार पे बहोत सारे तस्वीरे लगी हुई है यहां--

यह एक मॉल की तस्वीर यहां पे बहोत सारे--

यहां पे बहोत सारे फूलों से और माला से सजाया हुआ है।

यह एक बैंक की तस्वीर है जिसने स्टेट बैंक --

सामने पैसे निकालने वाली मशीन है।

यह एक कपड़े की दुकान है यहां पे बहुत सारी टी शर्ट लटकी हुई है यहां पेबहुत सारी लाइटे भी लगी हुई है यहां पे --

या पे बहोत सारे आदमी आ जा रहे हैं।

यह एक आफिस की तस्वीर यहाँ पे मेज और कुर्सी--

ओल उपल खिड़कियां भी बनी हुई है यहां पे सुभाष चन्द्र बोस की तस्वीर लगी हुई है।

टेडी बियर रखे हुए है शैंपू भी अलग अलग कंपनियों के--

लगाई हुई ये शिव जी की पार्वती माँ की हनुमान जी की गणेश जी भगवान की--

यहां पे बहोत सारे मूर्ति है यहां पे सामने बहोत सारे आदमी खड़े होकर अपनी फोटो खिंचवा रहे हैं।